और यहाँ बहोत स्कूटर्स दिखाई दे रहे है और कुछ चीज़े बिकने के लिए राखी गयी है ये देखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है |